उन्हीं के बगल में बहुत सारे गोदरेज तथा फ्रिज भी दिखाई पड़ रहे हैं।

ऊपर के तरफ एक टावर और एक टंकी भी दिखाई दे रही है।

यहां पे कई सारे लोग अपने पैसे डालने आए हैं।

यहां पे बहुत सारे लोग फोटो भी खींच रहे हैं।

एक एक घर के पर शटर लगा हुआ है। सामने की तरफ एक पोल भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक डस्टबीन भी रखी हुई है जिसके बगल में एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ हैं।

सामने की तरफ बहुत सारे लोग चेयर पे बैठे हुए हैं।